और ये पास में आदमी मोबाइल देखते हुए जा रहा है।

और दुकान में कलर सफेद किया हुआ है और अंदर कुछ घर बने हुए हैं उसमें कुछ सामान रखा हुआ है जैसे गटर लाइन वाले --

कुर्सियां भी लोहे कि है बहोत सारी और आगे एक डस्टबिन पड़ा है और ऊपर कुछ --

और आधी रेट में मिलते हैं और यहां आगे एक सफेद कलर की बाइक खड़ी है और यहां कुछ पेन के डिब्बे लगे हुए हैं कॉपी किताब पड़ी है आगे और एक स्कैनर पड़ा है।